और तीन ए_सी लगी हुई दिखाई दे रही है।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

और एक कंप्यूटर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

पानी को रोकने वाला मशीन लगी हुई है।

और यहां पे लैपटॉप भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति भी लगी हुई है और कुर्सियां भी रखी हुई हैं यहां पे।